यह एक फैक्ट्री का दृष्य है यहाँ पर बोहत सारे मजदूर काम कर रहें है सामने ऐक लड़का दीखाइ दे रहा है जिसने आसमानी कलर का स्वेेटर पहना हुआ है।

ये एक मंडप का दृश्य है जहाँ पे एक दुल्हा खड़ा है गोल्डन कलर के कुर्ते और लाल कलर के पजामे मे उसके हाँथ मे फूलों की माला रखी हुए है।

यहां पे एक व्यक्ति उजले कलर का कुर्ता और धोती पहना हुआ नृत्य कर रहा है यहॉँ स्टेज का कार्पेट का रंग लाल दिखाई दे रहा है।

सामने महिसासुर राक्षस का दृश्य बनाया गया है जिसमे माँ दुर्गा अपने त्रिसूल से उसको मार रही है।

और तिरंगे के कलर का हाथ में रिबन पहना हुआ है यहाँ खाली रोड भी दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ लड़के खड़े है जिसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है सभी के आगे एक मेज़ रखा हुआ है जो लोहे का बना हुआ है।

लड़के के पीछे मैदान है जँहा पे हरे कलर के घास दिखाई दे रही है पीछे बहुत सारा मकान दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक ए.टी.एम दिखाई दे रहा है जिसका दरवाजा कांच का बना हुआ है अंदर दो ए.टी.एम की मशीन रखी हुई है।